लकड़ी के तीन तखत या पलंग जैसे--

खांचे बने हुए हैं बीच में पट्टे के ऊपर लकड़ी में --

इसमें केवल चेहरे और हाथ की डिजाइन बनी हुई है बाकी एक सांप जैसे आकृति दी गई है।

कागजों का पुस्तकों जैसा इसके अंदर बहुत सारा कुछ - कुछ रखा है।

और बोहोत सारी महिलाएँ चटाई के ऊपर बैठी हुई है सभी ने साड़ी पहन रखी हैं।

ऊपर आसमान नीला दिख रहा है और हरी हरी घास दिख रही है और कुछ पेड़ भी हैं।

गुलाबी रंग का पर्दा टंगा है ऊपर रंग - बिरंगे फुग्गे लगे है एक लड़की --

और बगल मे एक दीपक जैसा बर्तन रखा हैं ऊपर छत पे कुछ डिजाइन बनी हैं।

होने के कारन बीच में एक धूप का हिस्सा दिख रहा है खिड़की जैसा --

जो कान के पास में अपना हाथ रखे हैं शायद फोन पे बात कर रही है।

सलून हिन्दी और इंग्लिश मे लिखा हैं एक व्यक्ति गुलाबी कलर का शर्ट पहने काला पैंट पहने उसकी ओर देख रहा हैं।